इसे लेकर वह बहुत खुश होते हैं यह काफ़ी अच्छे है अ देखने में ट्रॉफी काफ़ी अच्छा --

यहाँ पर लेडीज का मुहँ फेसिअल किया जाता है | यहाँ पर लडकियाँ लोग आकर अपने मेकअप करवाते हैं ।

यहाँ पर लोग आकर पैसा जमा करते है निकासी भी करते है और एक-दूसरे जगह पैसा को भेजवाते भी है।

यह एक छोटा सा पंजाब नेशनल बैंक है।

यह एक मेडिकल सेंटर है।

यह एक बिहार ग्रामीण बैंक है।

योगा करने से हमारे शरीर का वजन भी घटता है और --

यह विंटर में लोग इसे पहनने ओढने में काम आते हैं लोग इसे बाज़ार में जाकर खरीदते हैं और ठंड से बचते हैं।